इसमें ए_सी लगी हुई है और यह लंबे सफर के लिए चलती है।

यहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं यहाँ पे शादी होने वाली है।

कोचिंग सेंटर है यहां पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता है बहुत सारे बच्चे यहां पे ट्यूशन पढ़ाने आते हैं और यह सेंटर काफी बड़ा भी है।

शाम को यहाँ पे आजान दी जाती है। शुक्रवार के दिन बहुत सारे मुस्लिम लोग यहाँ पे अपना जुम्मा मनाने जाते हैं और यहाँ पे काफी भीड़ लगी रहती है।